स्विमिंग पूल नजर आ रहा है जो की काफी खूबसूरत और काफी बड़ा बना हुआ है।

और इसके आसपास आपके छोटे-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको एक टेबल पर एक आदमी लेटा हुआ नजर आ रहा है।

जो काफी बड़ा अ नजर आ रहा है आप यहाँ देख सकते हैं दो लोग आपको मैच खेलते दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में आप देख सकते हैं आपको कुछ अ स्कूल के प्रोजेक्ट बने हुए नजर आ रहे हैं।